यह पेट्रोल पंप है जहाँ एक गोल टायर पड़ा हुआ है।

यह एक तालाब है जिसे हिंदी में पोखर कहा जाता है यहाँ--

यह एक ग्राउंड है और यहा कांच की गोल शे-- गोल शेप में बिल्डिंग बनी हुई है छोटे छोटे गमले है और नारियल का पेड़ है रेड कलर के गमले दिख रहे है।